ये एक चिड़ियाघर है। यह चिड़ियाघर में हिरण को कैद कर के रखा गया है। यहाँ पर बहोत से हिरण को कैद कर के रखा गाया है। इन हिरणों को हरा घांस खाने के लिया दिया जाता है और इसे चारों तरफ से घेर दिया गाया --

जगह है यह जगह मे रनर मशीन लगाया गाया है यहाँ पर लोग इस रनर मशीन को यूज करने के लिए आते है यहाँ पर अधिकतर मोटे-मोटे लोग आते है जो लोग दौड़ने में समर्थ नहीं होते है वह इस रनर मशीन मे दौड़ते है।

एक समुंद्र है। यह समुंद्र में लोग स्नान कर कर यहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर मे आकार लोग पूजा करते हैं। यह मंदिर हिन्दू धर्म का मंदिर है। यह मंदिर में लाखों लोग आते हैं पूजा करने के लिए।

यह उसकूल मे बच्चों को पढ़ाया जाता है यहाँ पर वन से लेकर ऐट तक के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते है।

यह कुए मे बहुत पानी है। यह कुए मे से लोग पानी उठा कर पीते है। इस कुए को बहुत से लोग यूज करते है।